चित्र मे एक नदी बनी हुई जोकि बहोत बड़ी दिख रही है साथी सामने एक पहाड़ बना हुआ जिसके उपर के बड़े बड़े पेड है।

चित्र में एक मकान बना हुआ है जो कि बहुत बड़ा है। जिसका रंग सफेद और नीला है। साथ ही सामने गेट बना हुआ है। गेट तो पत्ते लगे हुए है। साथ ही सामने एक व्यक्ति खड़े जिन्होंने सफेद रंग की कमीज़ पहनी है।

सामने कई सारे मार्बल के बड़े-बड़े से टुकड़े रखे हुए है एक गाड़ी रखी जिसके ऊपर मार्बल का टुकड़ा रखा हुआ है उसे दो व्यक्ति पकड़े हुए है।